ये पूरा मं भगवान जी का सजावट जिसमें --

केला के पत्ते हैं और रथ सजा हुआ है और दो घोरा है यहाँ पे --

सीन है जिसमें पत्थर सब बहुत सारे हैं पानी जो रुका हुआ है सुबह का है और हर जगह हरियाली हरे पेर पौधे सब है।

और लोग सब जा रहे हैं दुकान पे खरीदने और दुकान पे कुछ काफी बरा है।

दो घर है एक घर व्हाइट कलर का जो पेंट जो काफिस खूबसूरत है और एक बगल में है जो कन बन ही रहा है कंस्ट्रक्शन काम चल रा --

यह एक मोल है जिसका नाम ट्रेंस जूनियर है जिसमें बच्चों को खिलौना कपड़ा सब दिख रहे एक लेडी है जो ब्लू रंग का --

और सीरही के पास दो इंसान बैठे हैं आग कॉरिडोर लोग बैठे हुए हैं दु गारी चेयर है बगल में वॉशरूम है।

ये सीन क्लीनिक का है जिसमें दो इंसान बैठे हैं दोनों फोन चला रहे हैं।

एक सामने टेबल इसने फोन रखा हुआ है रिमोट रखा हुआ है और इंसानों के हाथ में घरी --

काफी सुंदर स्कूल है एक उसके बगल में एक न खराब बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन खराब है।

लकड़ी के कलर में है जो काफी अच्छा है बगल में साइकिल हैं ये पन्नी से ढका हुआ है पुराना कुछ घर जैसा है जिसमें--

और ब्लू कलर का रंग उड़ा रहे हैं और आराम से देख रहे और पीछे कुछ डांस प्रोग्राम का चल रहा है।

काफी अच्छा दुकान है जो बहुत सामान रखा कुछ काफी बरा भी है और सब कुछ मिल सकता है इस दुकान में और लोग सब है जो खरे हैं।

एक प्यारी सी बच्ची है जो गार्डन में फोटो क्लिक कर रही है जो मरीगोल्ड का फ्लाअर है और पीछे एक बरा सा --

खड़ी है स्माइल कर रही है अ अ पीछे पूरा पेड़ पौधे सब हैं।

काफी अच्छा टेंट सब सजाया हुआ है सब ग्रीन पर्दा लेके बहुत अच्छे से कल्चर को दशा रहे हैं हमारे।

टेबल काफी छोटा सा जो बीच में कुर्सी काफी सुंदर डिजाइनेबल है।

ऊपर लकड़ी का बना हुआ है ऊपर छेद है वहाँ देख सकते दीवारों में घर जाने का रास्ता उसका है।

ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ का सीन है जहां पे बहुत सारे औरत है लड़का लोग है एक औरत जो पहाड़ के नीचे बैठी हुई है झुकी हुई है जो।

पेर सब है पत्थर सब है बहुत बड़े-बड़े पत्थर पेर सब है गुफा का सीन है अच्छा है।

ये रिसेप्शन का सीन है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सच में सजाया हुआ है जो बहुत काफी सुंदर है एक इंसान है जो --

यहाँ पे तो काफी कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स है जरा आपको येलो जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

खिड़की खोला हुआ है और टी_वी का डिश लगा हुआ है दोनों काफी सुंदर घर है।

ये भी कुछ पहाड़ का सीन है जो लड़के लोग चहरे पर पहाड़ पे और काफी सूखा जगह है मतलब पूरा पेर --

ये रोड का सीन है जो देख सकते हैं एक बाइक पे चार आदमी बैठा हुआ है उस बगल आप देख सकते हैं कि ओटो है।

ये गांव का सीन है इसमें देख सकते है भयूसी सब हैं चार भयूसी है दो भयूसी एक साथ एक भीड़ से अलग है बगल में झोपडी हैं।

ये देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप का सीन पेट्रोल पंप है चार पेट्रोल पंप है जिसमें एक लोग जा रहे मेड इन इंडिया का है।

पूरा खाली-खाली एक दुकान जिसमें ईंटा भरा हुआ है और कुछ नहीं है और पूरा खाली कोई बाइक - वाइक नहीं आया हुआ है जो काफी अच्छा है।

किया गया हुआ है जो काफी अच्छा है और हैप्पी बड्डे लिखा हुआ है।